नमक का डिब्बा भी साइड में रखा हुआ है और सामने एक बोतल है।

और सूरज निकला हुआ है और आसमान में बादल भी छाए हुए हैं धूप भी दिख रही है बादल भी दिख रहे हैं और एक पेड़ काफी बड़ा है।

इस इमेज में मुझे यह समझ में आ रहा है कि यहां पर कुछ लोग हैं एक गांव है और पूरा जंगल में गए हुए हैं।

पासपोर्ट साइज फोटो जेरोक्स वगैरह वगैरह और ब्लीचिंग पाउडर भी मिलता है यहां पे--

तो जैसा की मैं इस इमेज में देख पा रहा हूं ये एक दुकान लग रहा है ऊपर पंखा लगा हुआ है।

काफी खूबसूरत इसको सजाया गया है और कुर्सियां लगी हुई हैं।

साइड में जंगल भी दिख रहा है तो ये जंगल इलाके में कोई किसी का घर होगा जिसके पास इतनी बकरियां होगी।

तो मुझे इस इमेज में यह समझ में आ रहा है कि यह फूल का बगीचा है जिसमें सिर्फ गेंदा फूल लगा रखे हैं।

तार लोग बैठे हुए हैं जिसमें से एक आंटी हैं और एक वाइट टी शर्ट पहने एक अंकल है एक हल्का ब्लू पहने एक बैठे अंकल हैं।

कई कुर्सियां लगी हुई हैं उधर भी कुर्सियां हैं और दरवाजे हैं।

तो इसमें जे मुझे यह समझ में आ रहा है कि यहां पर एक-क सैलून नहीं है मेल लग रहा है उ मॉल --

फिर यहां पे एक बैग पड़ा हुआ है सोफे में किसी का और नीचे रणवीर की तस्वीर फिर सामने एक येलो टिशर्ट पहने एक आदमी कुछ काम कर रहे।

यहां पे एक आदमी शायद बिरयानी मांग रहा है और दूसरा आदमी चेक करा रहा है कि कैसा है और दुकान खुली हुई है।

इस इमेज में मुझे यह समझ में आ रहा है कि यहां पर एक शादी होने वाली है क्योंकि एक शादी का मंडप लग रहा है।

फूल वूल लगा रहे हैं सीढ़ी को देख रहे हैं और सजा रहे हैं और पीछे एक आदमी बैठा हुआ है जो कुछ और ही देख रहा है फिर--

उसके आगे कुछ लोग कुछ बातें कर रहे हैं और इधर दो बंदे खड़े हैं।

कुछ गड्ढे में है कुछ उधर ऊपर है और सामने वाइट कलर की प्लास्टिक के ऊपर है।

और बीच में पूरा रास्ता खाली है।

जैसा कि मैं इस इमेज में देख पा रहा हूं कि सामने एक रोड है उसके उसे तरफ उस पार दुकान है और कुछ गाड़ियां चल रही है लोग चल रहे हैं और--

और उसके साइड में मेडिकल शॉप दिख रही है उसके अंदर कुछ लोग दिख रहे हैं।

कोई इसे बेचने के लिए आया होगा और यहां पे खेत का बांध जैसा लग रहा है।

दूसरे साइड में है जलगैंग बिंदु और रंगांव और लेफ्ट साइड में पेड़ पर एक लगा हुआ है कुमाई।

ऊपर बादल मंडराए हुए हैं कुछ पेड़ हैं आसपास और दीवारों में कुछ लिखा हुआ है।

और जैसा कि मुझे इस इमेज में समझ आ रहा हैं कि सामने एक बहोत अच्छा घर है।

यहां पे कुछ लिखा हुआ है लेकिन वह समझ में नहीं आ रहा है और आगे एक लड़की हाथ धो रही है।

तो जैसा कि मैं इस चित्र में देख पा रहा हूं कि मुझे एक सूरज उगता हुआ दिख रहा है।

और अंकल बैठे हुए हैं।

वहां पे किसी की तस्वीर है कोने में फिर एक घड़ी टंगी हुई है और कुछ किताबे हैं कांच के अंदर।

बहुत सारे हैं अलग अलग तरह से हैं और उधर घेरा लगा हुआ है और बिजली का खंभा है और बीच में एक छोटा सा पतला सा रास्ता है और साइड में घर है।

और जैसा कि मैं इस इमेज़ में देख पा रहा हूँ मुझे लग रहा है ये एक साइबर कैफे है और कुछ कुर्सियां रखीं हैं।

इसका मतलब ये दिवाली का महीना होगा और यहां पे काफी सारी लाइट लगा रखी है कितना खूबसूरत लग रहा है और ये दुकान लग रही है।

लोहे की तार बिछा रखी हैं और यहां पे सीमेंट डाला जा रहा है।

और उधर धुंधला सा पहाड़ नजर आ रहा हैं और जंगल हैं साईड में--

तो मुझे इस इमेज में ये समझ में आ रहा है कि ये एक गटर है जिसको ये लोग डिज़ाइन से बंद करने की कोशिश कर रहे हैं।

लगता है ये लोहे का कारखाना है यहां पे लोहे का काम होता है।

उधर एक बैठने के लिए जगह है और काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं यहां पे आसपास तो यहां जंगल एरिया में बनाया गया है।

तो जैसे कि मैं इस इमेज में समझ पा रहा हूं कि ये आदमी जंगल में आया हुआ है।

इन्होंने ग्रीन टी-शर्ट और ब्लू पैंट पहनी हुई है हाथ में घड़ी है और थम्स अप का स्वैग लगा रखा है और एक पानी पी रह है।

बाहर एक अंकल ब्लू शर्ट में सब्जियां उठा रहे हैं और साइड में दीवार है।

दीवार में कुछ पोस्टर लगे हुए हैं और उसके इस तरफ कुछ घर हैं बिल्डिंग्स हैं।

काफी नई नई फोन लग रहे हैं और शायद ये कवर चार्जर वगैरह ही बेचते होंगे।

ब्लैंकेट और ऊपर दो पंखे लगे हुए हैं और एक कैमरे जैसे लाइट लगा रखे हैं या कैमरा ही है।

साइड में एक व्हाइट कलर का रेड कलर का टॉवल है।